यह कोई मॉल है बाल काट ने वाला सोफा है सब है और शीशा भी है और लाइट भी जल रहा है और काउंटर भी है।

कपड़ा वपडा सुखा सुखा रहे है लोग रहते है यहाँ पर घर में--

ये कोई सैलून है और ये क्रीम ये सब होगा दरवाज़ा भी है।

और शीशा भी है बड़ा सा भी दिख रहा है नज़ारा भी ठीक ही है और बहुत अच्छा है ए _टी _एम का -